और यहां पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे --

मरे यहां का भी अच्छा मॉल है। यहां सब सामान मिलता है यहां पर --

यहाँ देखिए यहाँ --

पहाड़ भी दिखाई दे रहा है यहाँ से जो काफी दूर है वो पहाड़ और पहाड़ के ऊपर काफी हरे भरे पेड़ हैं यहाँ बड़े बड़े। पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से।